इस हवेली के बाहर बहुत सी कार खड़ी हुई हैं।

और बहुत सी विंडो और खिड़कियाँ भी लगी हुई हैं।

यह बहोत ही बड़ा दिखाई दे रहे हैं।

यह एक मार्केट है इस मार्केट में बहुत सी दुकानें हैं।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेबल है इस टे और यहां पर चेयर भी है यहां पर एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है।

है और यहां पर टेबल और चेयर भी रखी है और यहां पे व्यक्ति भी है।

और यह ब्लैक कलर की चेयर भी है।

और गेट भी लगा हुआ है और यहां पर भी बिछी हुई हैं जो बोहोत ही सुंदर दिखाई दे रही है और ए_सी भी है।

और यहां पर टेंट भी है और बहुत सी कार भी खड़ी हुई है।

यह एक बहुत ही बड़ा कॉलेज है इस कॉलेज के बाहर एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है।

इस ग्राउंड में बहुत बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं और बहोत से सुंदर सुंदर फूल भी है।

यह एक पहाड़ है इस पहाड़ पर बहुत सी मिट्टी है और यहां पर ये जे_सी_बी है।

और यहां पर मशीने भी रखी हैं जो नीले कलर की है।

यह एक ऑफिस है इस ऑफिस में एक टेबल है इस टेबल के पास में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

यह एक बहुत ही सुंदर रोड है इस रोड के आस पास में बहुत सी सुंदर सुंदर पेड़ पौधे खड़े हुए है।

और इसके अंदर कुछ कपड़े भी टंगे हुए है।

यहां एक आफिस है इस आफिस में एक पंखा है।

और यहां पर बहुत सारे खिड़कियां भी हैं और एक नीले कलर का गेट हैं जो बहुत ही बड़ा है।

यह एक बहुत ही सुंदर फंक्शन है।

यह एक समुद्र है इस समुद्र में दो नाव है जो बहुत ही पुरानी दिखाई दे रही है।

और यहाँ पर बहुत ही सुंदर हरियाली दिखाई दे रही है।

और यहां पर बहोत सारे व्यक्ति इधर उधर फिर रहे हैं।

और यहां पे एक ट्रैक्टर भी है जो ऊपर उठ रहा है और जो रेड कलर का है।

और इस पर लकड़ी का क्वाड भी लगा हुआ है।

और इसमें एक प्लग भी है।

यह एक बेड का सम्ररा रहा।

और यहां पर कुछ सामान भी रखा हुआ है।

यह रेल फाटक है। यहां पर एक बोहोत बड़ी रेल खड़ी हुई है।

और यहां पर कबूतर भी नहा रहे हैं बहुत से पक्षी भी है।

यहां एक पिंजरा जो लोहे का है।

इस पिंजरे में दो तोते हैं जो पीले और नीले कलर के है।

और इसके बाहर एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है जो इन्हें दाना चुगा रहा है।